भगवान जी का पोस्टर लटका हुआ है काफी सारी मेज कुर्सियां है।

काफी लोग बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं।

दुकान है इसके बाहर बाइक खड़ी हुई हैं।

दो ऑटो है दो आदमी खड़े हुए हैं काफी सारी लाइटे जल रही--

ये एक ऑफिस है इसमें काफी सारी लाइटें जल रही है काफी सारे पंखे हैं।

सामने खिड़की है खिड़की पे पर्दे लटक रहे हैं काफी सारी कुर्सियां हैं काफी सारी टेबलें हैं।

टेंट लटके हुए हैं अंब्रेला लगे हुए हैं दो तीन कुर्सियां है टेंट है आस पास पेड़ पौधे हैं।

माइक लगा हुआ है बिल्डिंग है बिल्डिंग का गेट बंद है।

ये सस सामने स्टेशन बसे से खड़ी हुई हैं।

ये मैरिज हॉल है इसमें काफी सारी लाइटें जल रही हैं काफी सारे सोफे हैं कुर्सियां हैं।

रेनोलूट सर्विस है बाहर एक कार है कार के ऊपर बैलून है आस पास पेड़ पौधे हैं।

ये सामने रोड है रोड के आसपास काफी सारे पेड़ पौधे हैं एक लेडिज है जो रोड पे चल रही है एक--